यह एक शादी का पिक्चर हैं जिसमे महिला और लड़की दोनों हाथ रखके फोटो मैं जो की टी_वी के माध्यम से दिखाई दे रहा हैं | इसमें की भाईसाब दिखाई दे रहे हैं जो की चश्मे पहने हुए है।

किए गयी हुई है और इसमें कई सारे पाये नज़र आ रहे हैं। एक आदमी खड़े है जो की जान-जा रहे हैं भीतर की ओर।

एक किराना दुकान है। इसमें चावल की बोरियाँ रखी है च्यवनप्राश है ग्लूकोस है ग्लूकोस का फ्री वाला डिब्बा भी है पार्ले जी है मैरिगोल्ड है।